इस पानी में बहुत सारे छोटी-बड़ी मछलियां रहती है यह पानी में बहुत सारे आदमी नहाते है।

यह इसके पेंट उठ गए हैं ।

दिल है यह बजरंगबली की मंदील है यह मंदील काफी बड़ी है इस मंदील में एक छोटे से पँखे लगे हुए है यह मंदील में यह बजरंगबली की मूरत बहुत ही बड़ी है यह बजरंगबली अपने कांधे पर --